यहाँ पर भी बहोत सारी दुकानें रखी हुई दिखाई दे रही है बुक कॉपी यहाँ पर पेन कॉपी सभी मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ है महेश बुक स्टोर्स --

ईस्टर लॉक को बनाया गया है पर इंजिना लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे वर्षा भी पेड़ -पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ आसमान भी दिखाई दे रहा है बोहोत ही अच् --

बहोत ही गहराई में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़- पौधे लगे हुऐ दिखाई दे रहे है पूरा आसमान नीला सा दिखाई दे रहा है पर बहोत ही अच्छा लग--

यहाँ पर भी एक तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ एक पानी में एक मकान सा बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ एक बाहर एक--

यहाँ पर अभी छतीसगढ़ स्टेशनरी है यहाँ पर छतीसगढ़ की बहुत सारी बूके मिलती है यहाँ पर बहुत सारी भिड़ भी दिखाई दे रही है यहाँ पर एक गाड़ी रखी हुई दिखाई गई है।

इस दुकान को सजाया गया बहुत ही अच्छी टॉर्च लगी हुई दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छा लग रहा --

ऊपर भी एक बैंक बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैंक भारत का बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर--